ये एक हॉल की तस्वीर दिख रही है।

मकान के गेट के बाहर कुछ लोग खड़े है। एक लोग के सर पर एक टोकरी रखी हुई है।

यहाँ पर एक हॉल का चित्र दिख रहा है। हॉल का फर्श --

रंगोली में कई रंगों का प्रयोग कर रहे हैं।